एक ब घर के आगे हमें एक बड़ी सी रेत की ढेर लगी हुई दिख रही है तथा वहां पे एक बड़ा सा गेट बना हुआ दिख रहा है।

पे एक आदमी ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है तथा दूसरे आदमी ने पर्पल कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

यह इमेज में हमें बड़ा सा मैदान दिख रहा है जिसके अंदर बहुत से बुलडोज़र दिख रहे हैं। वह बुलडोज़र वहां पे घर बनाने का काम कर रहे हैं तथा वहां से मिटटी को --

वहाँं नीचे फूलों की माला टंगी हुई है तथा उसके सामने बहुत सी टेबले लगी है। वहाँं पे बहुत से लोगन बैठे दिख रहे --

यह इमेज मे हमे एक गैराज दिखाई दे रहा है और उसके साइड मे एक पार्किंग स्लॉट है पार्किंग स्लॉट के अंदर बहुत सी कार --

बाइके खड़ी हुई है तथा वहा पे दो लोग हमे निकलते हुए दिख रहे है जोकि पर्पल कलर की शर्ट पहने हुए है वह गाड़ी लाल कलर की दिख रही है जोकि होंडा की कार है।

वो बैनर के ऊपर सफेद कलर के शब्दों मे कुछ शब्द लिखे है तथा वहाँ पे बहुत सी लाइटे जल रही है जोकि पीले कलर की नजर आ रही है।